जहां पे जो वेटर है उन्होंने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और सर में मा ग्लब्स लगाया हुआ है।

लड़का खड़ा है जो कि लाल कलर की टी शर्ट पहने हुए है।

तीन बिस्किट बगल में चिपके हुए हैं।

यहां भी चित्र कोई कार्यालय का लग रहा है।

कुछ लोग उसके साथ अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं।

पीछे तरह तरह के फूल खिले हैं।

बगल में एक लड़के का हाथ दिख रहा है जो कि एक अंगूठी पहने और एक कंगन पहने हुए हैं।

पीले रंग का वस्त्र पहने पंडित जी जा रहे हैं।

एक व्यक्ति टोपी लगाए हुए हैं।

यहां पे एक व्यक्ति कहीं जा रहा है।

ऑटो काला और पीला रंग का है।

यह चित्र एक फल के ठेले का है।

यह चित्र एक पेट्रोल पंप का लग रहा है।

जहां पे दो लोग तेल भर रहे हैं।

यहां पे बारिश का मौसम हुआ है।

पानी जो है वह मिट्टी के रंग का है।

बगल में पाइप लगी है नीले नीले रंग से--

जोकि ऊपर लिखा है नॉन बेजान।

लाइट कलर में पेंट है इमारत पे।

और इधर भगवान हनुमान जी हैं।

एक पोस्टर लगा हुआ है नीले रंग का।

जो कि लाल और पीले रंग के पुते हैं।

यहां पे केक अलग अलग वैरायटी के रखे हुए हैं कांच के अंदर।

यहां पे बहोत सारे लोग जिम कर रहे है।

और गिफ्ट देने के लिए तरह-तरह की मिठाइयां पैकड है बढ़िया अच्छी पॉलिथीन में।